इसमे यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह के सर्विस भी दिया जाता है| यहाँ पे कस्टमर को अच्छे से अच्छे क्वालिटी के तेल मिलते हैं| यहाँ पे

यह एक रेस्टोरेंट है। यह रेस्टोरेंट काफी अच्छा लग रहा है। यहाँ पर बहुत ही साफ़ सुथरा रखा गया है। इस रेस्टोरेंट में कैंटीन में है।

यह दीवाल काफी पुरानी लग रही है। इसमें पूरी तरह पक्खल से बनाया गया है जो देखने में काफी सुंदर लग रहा है। इसमें बहोत सारे कलर भी है किया गया है जो देखने --